ये बहुत ही अच्छा पार्क है अभी तक गेट बंद है कुछ दिखाई नही दे रहा है अंदर मे बहुत सारे व्यवस्थाए है खेलने की जगह है स्लाइडिंग है बच्चे के लिए बच्चे के लिए शी श भी है।

वो एक लड़की की तस्वीर है जो की उसमे दर्शाती है की हवा बहुत ही अच्छी आ रही है।

जो की इफेक्ट डालकर एक ही बिल्डिंग को दोबारा दिखाया गया है लोगों को बेकूफ बनाने के लिए ऐसा किया गया है।

बैनर लग रहे है इसमें वो प्रचार की बैनर लगी हुई है और इस बिल्डिंग के अंदर मे सारे वर्कर बैंक के कर्मी काम कर रहे है और इससे--